सामने एक बिजली का खम्बा और तार भी दिख रहे और कुछ इमारते दिखाई दे रही सड़क के बाजु में कुछ लोग चलते दिख रहे।

वो सामने तस्वीर दिखाई दे रही है और एक पंखा दिखाई दे रहा है एक आदमी भी दिखाई दे रहा है जिसने गुलाबी रंग की शर्ट और नीचे पैंट पहना हुआ है।

इस इमेज में हमें एक इमारत दिखाई दे रही इमारत सफेद रंग की है और और उसके छत पर लाल रंग दिखाई दे रहा है सामने एक रास्ता दिखाई दे रहा है।

सामने आसमान दिखाई दे रहा है और बडे बडे पेड दिखाई दे रहे है मूर-र ब्रिज पर तार दिखाई दे रहे है।

इस इमेज में हमें एक बुक सेंटर दिखाई दे रहा है बुक सेंटर के बहार बहोत सारी भीड जमा हुवी है।

नदी के उपर एक ब्रिज है। जिसमें रेलिंग भी दिखाई दे रही है। सामने आसमान में बादल दिखाई दे रहे है और निले रंग का आसमान दिख रहा है।